c और c ++ में structures structures पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
structure क्या है
structure को declaration घोषित करना
हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ
उबंटु operating system version 1104
gcc और g ++ compiler version 461
structure के परिचय के साथ शुरू करें
जब एक और एक से अधिक variables एक ही name में समूहित होते हैं उसे structure कहते हैं
structure का उपयोग भिन्न data को एक ही object में इकट्ठा करने के लिए किया data है
इसे compound datatype compound data type कहते हैं
इसका उपयोग संबंधित जानकारी को एक साथ इकट्ठा करने के लिए किया जाता है
अब हम structure को घोषित करने के लिए syntax देखेंगे
यहाँ कीवर्ड struct compiler को कहता है कि structure घोषित हो गया है
strcut _ name structure का name है
उदाहरण struct employee;
आप कोई भी name दे सकते हैं
अब हम देखेंगे कि structure variable को कैसे घोषित करें
इसके लिए syntax है
struct struct _ name and struct _ var;
struct _ var struc _ name प्रकार का एक variable है
उदाहरण struct employee addr;
addr employee प्रकार का variable है
अपने उदाहरण पर जाएँ
मैंने editor में program पहले से ही टाइप किया है अतः इसे खोलें
ध्यान दें कि हमारा file structure c है
इस program में हम structure का उपयोग करके तीन विषयों के अंकों की गणना करेंगे
अब मैं code समझाता हूँ
यह हमारी header file है
यहाँ हमने student के रूप में structure घोषित किया है
फिर हमने english maths और science के रूप में then integer variables घोषित किये हैं
variables जो structure के तहत परिभाषित किये जाते हैं structure के सदस्य कहलाते हैं
यह हमारा main function है
यहाँ हमने एक integer variable total घोषित किया है
अब हमने एक structure variable stud घोषित किया stud student प्रकार का variable है इसका उपयोग structure सदस्य members को बदलने और access करने के लिए किया जाता है
यहाँ हमने सदस्य में बदलाव किया है
उनको 7570 और 65 values देकर
यहाँ हम तीन विषयों के योग की गणना करते हैं
फिर परिणाम घोषित करें
यह हमारा return statement है
save सेव पर click करें
program को निष्पादित करें
कृपया अपने कीबोर्ड पर ctrl alt और t कीज एक साथ दबाकर
टर्मिनल विंडो खोलें
कंपाइल करने के लिए type करें gcc space structure c space hyphen o space struct और enter दबाएँ
निष्पादित करने के लिए type करें dot slash/struct enter दबाएँ
output इस तरह प्रदर्शित होता है
total is 210
अब हम इसी program को c ++ में निष्पादित करेंगे
अपने program पर वापस आएँ
मैं समान code edit करूँगा
पहले keyboard पर shift ctrl और s कीज एक साथ दबाएँ
अब extension cpp के साथ file सेव करें
और सेव पर click करें
header file को iostream के रूप में बदलें
अब using statement को सम्मिलित करें
और सेव पर click करें
c ++ में structure declaration declaration c के समान है
अतः कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है
at में हम printf statement को cout statement में बदलेंगे
format specifier और बैकस्लेस \n को डिलीट करें
अब comma डिलीट करें
दो opening angle brackets type करें
यहाँ closing bracket डिलीट करें
और दो opening angle brackets type करें
double quotes में type करें \n
अब सेव पर click करें
program को निष्पादित करें
terminal पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए type करें g ++ space structure cpp space hyphen o space struct1
यहाँ हमारे पास struct1 है क्योंकि हम file structure c के लिए output पैरामीटर struct को overwrite नहीं करना चाहते हैं
अब enter दबाएँ
निष्पादित करने के लिए type करें dot slash/struct1 enter दबाएँ
output इस प्रकार प्रदर्शित होता है
total is 210
आप देख सकते हैं कि output हमारे c code के समान है
अब अपनी slides पर वापस जाएँ
सक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा
structure structure के लिए syntax
उदाहरण struct struct _ name;
structure के सदस्यों को access करना
उदाहरण stud maths = 75;
और structure variables जोड़ना
उदाहरण total = stud english + stud maths + stud science;
नियतकार्य के रूप में एक कर्मचारी के records को प्रदर्शित करने के लिए एक program लिखें
जैसे name name address पता designation पद और salary वेतन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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद